जहां पर पुरानी बाइकों को बनाया जाता हैं। साथ ही उन्हें --

जैसे कि यहाँ पर एस.बी.आई बैंक के नीचे वहाँ पर एक ए.टी.एम है जहां पे बहुत सारे लोग --

तो जैसा की आप यहाँ फोटो में देख सकते है यहाँ पे दो तीन दुकाने है जिनमे से एक एक दुकान का नाम है वुडलैंड ।

यह लोगो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कार्य करती है अथवा ये बहोत ही ज्यादा कार्यफुल होती है।

मंदिर को लेकर और मंदिर को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे किसी की शादी की तैयारी हो रही हो।

मतलब की बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। साथ ही मे यहाँ पर --

देखने में ऐसा लाग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और इन्होंने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं और --

तो जैसा कि हम यह जगह देख पा रहे हैं यहाँ पर रोड पर एक कार खड़ी है और साथ ही में कार के समीप दो-तीन लोग खड़े हैं जोकि वहाँ से गुजर रहे हैं।

तो जैसा कि आप देख पा रहे है कि यह एक जगह है। जहां सामने की ओर चार पिलर है। उसी के सीधा एक भवन एक बोहोत ही बड़ा भवन है और आसपास --

तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह एक जगह है जहां पर लड़कों के लिए एवं आदमियों के लिए बहुत ही अलग -अलग तरीको के कपड़े हैं वो चाहे --

और पास में कुछ चीज रखी हुई है। ये दुकान में बहुत सारी चीज भी उपलब्ध है।

तो जैसा कि हम यहां यह तस्वीर में देख पा रहे हैं कि यह एक जगह है जहां पर बिजली के काम चल रहे हैं। यह लोग ऊपर की ओर --

बैठ के मजदूर हैं जो कि पीछे की ओर से सारी चीजें बना रहे हैं। साथ ही में एक लड़का वहाँ पर खड़ा है जो कि यहाँ पर फोटो ले रहा है।

ये बैंक अंदर की ओर हैं। जहां से हम बाहर की दिशाओ से यहाँ पे अंदर जा सकते हैं और बैंक ओपन कर सक --

उसको पानी डालकर इस गाड़ी के धूल मिट्टी निकली जा रही है और उसे अच्छे से साफ किया जा रहा है।

तो जैसा कि हम देख सकते है यह फोटो में यह एक मंदिर है जोकि शिव भगवान का है यहाँ ऊपर की ओर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ हैं।

तो जैसा कि हम यह फोटो में देख पा रहे है कि यह एक आदमी है जो अपने बाल को यहाँ पे कटवाने आया है।

बिजली का खंबा है जहां से बिजली आती औ जाती है।

यह कार के ऊपर बहुत ही सारे निशान हैं।

उत्सव की जगह है। अंदर बहुत ही बड़ा मेला लगा है और साथी वहां पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है।

यहाँ पर रोड है और पी आगे से पानी है साथी यहाँ पर सूरज की रोशनी भी है।

तो जैसा कि हम यह फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक अलमारी दिख रही है जोकि चॉकलेटी कलर की है।

फोटो ले रहा है। इसके आस-पास छोटे-मोटे कचरा पड़े हुए है और काना --